इस बस पे चार टायर है।

यह एक सड़क का दृश्य है।

और दो सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

यह एक सुपरमार्केट का चित्र है।

और अलग अलग रंग की है।

यही सब रंग हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक दृश्य है जिसमें की मकान बन रहे हैं।

जिसके हाथ में ढेर सारे कागज हैं।

कुर्सियां सभी काले रंग की हैं।

बहोत व्यक्ति यहां पर मसाले खरीद रहे हैं।

सबको मसाले की तरह बेचा जा रआ है।

और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग रंग के पापड़ रखे हैं।

इस दृश्य में खूब सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

जिस मकान में तीन खिड़कियां हैं।

जहां की रात हो रही है।

कोई सफेद कोई काली अलग अलग रंग की हैं।

यहां पर तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि सब अलग अलग हैं।

बहोत सारे बच्चे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चों की अलग अलग कुर्सी है।

जोकि दुकान में सूट बेच रहा है उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई--

इस दृश्य में तीन बच्चे नाच रहे हैं।

एक ने नीले रंग की लेकिन लेगीन्स डाली हुई है और उसका सफेद रंग का टॉप है एक--